जामुन की गेंदे की अनेक प्रकार की मालाएं लगी हुई है मलाएं बहुत सुंदर लगी हुई है इसमें अनेक प्रकार की आकृतियां डिजाइन किए हुए हैं।

बस स्टैंड है जिसके बाहर बहुत सारी बसें लगी हुई है यहां पर एक टीन शेड है लोग यात्री आ रहे हैं बस से उतर कर कुछ चढ रहे हैं।

तेल लगी हुई है अनेक प्रकार की--

इस संस्थान का कलर संतरे कलर का है बाहर एक पौधा लगा हुआ है पता नहीं वह किसका होता है।

यहां पर एक मोबाइल की दुकान को दर्शाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे मोबाइल पड़े हुए हैं पास में एक कूलर है।

कांच के अंदर पड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मोबाइल है एक इनवर्टर भी पड़ा हुआ है यहां पर।

इस क्लास की टॉप पर लाइटें बहोत सारी लगी हुई है पास में एक एयर कंडक्टर लगा हुआ है।

नीम के आधे लगे हुए हैं जो सुबह सुबह टहलने के काम आते हैं एक आदमी टहलने के लिए जा रहा है।

यह एक स्कूल के दृश्य को दर्शाया गया है स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है इसके बहार एक पार्क है और एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है।

इस वक्टिका के अंदर ऊपर ग्रीन कलर का एक कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और स्पीकर लगे हुए हैं यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है।

यह स्टेशन बहोत ही अच्छा है इसकी बिल्डिंग बहोत ही अच्छी है या बहोत ही अच्छा लग रहा है स्टेशन --